उधर पर्वत दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े पौधे हैं और कहां से--

रूम के दीवार में शिशा लगे हुए हैं।

दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है टी_वी_एस सेल सर्विस एंड पार्ट ।

एक साइकिल का स्टैंड दिखाई दे रहा है।

कॉपी किताब दिखाई दे रहा है।

और यह एक दिन का समय है।

बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहा है।

सारे छोटे साइकिल ऊपर में रखे हुए हैं।

और छोटे छोटे घर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

और एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग चेयर में बैठे हैं और खड़े हुए हैं।

और दूर बहुत सारे मिट्टी नजर आ रहे--